कुछ काम कर रहे हैं और उसके घर पे एक लाइट बल्ब है।

ये एक कपड़ा दुकान है जहां कि सभी मिला जाता है।

और प्लेग्राउंड है जो की ग्रास छोटा छोटा ग्रीन ग्रीन देखने को मिल रहा है।

और पुलिस स्टेशन के बगल में एक भूरा चल रहा है।

बहुत सारा जो कि घर जो है टीना से बना हुआ है।

ऐ_सी भी है और इसके बाद--